बहुत बढ़िया मौज आ रही है इन लोगों की --

इसमें मेज कुर्सी पड़ी है। पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नीली शर्ट पहने हैं येलो पहने हैं क्रीम कलर की पहने व्हाइट पहने हैं।

कुछ दे रहे हैं कुछ किसी की सिफारिश में बोतलें रखी हैं। कोट पैंट रखा है।

और वर्दी में है यह सब हरी कोई काली पैंट कोई नीला कुर्ता कोई हरा कुर्ता पहने हुए हैं और --